जो कि सब जेल से हैं वो अपना ढ़लैया कर रहा है लोग जो कि बहुत अच्छा लग रहा है ढ़लैया कर --

ये पानी है जो पानी में पूरा अच्छा लग रहा है देखने में खुबसूरत है और पूरा ये अपना काम कर रहे हैं लोग।

बाइक है गाड़ी है जो कि स्टील नियन लग रहा है साइकिल जैसा लग रहा है।

पत्थर जैसा है जो कि इसमें पानी लगा है जो कि बहोत अच्छा लग रहा है देखने में सुन्दर --

कॉपी बुक लेके अपना पढ़ते हैं लोग जो कि बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में ये उसमें --